कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।

कुछ लोग भी दिख रहे है मुझे पेड़ भी दिख रहे है।

मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है।

मुझे एक टोल टैग दिखाई दे रहा है।

गल दिखाई दे रहा है और बहोत सारे पौधे दिख रहे--

और मुझे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

गार्डन दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

मुझे एक कार दिखाई दे रही है।

जिसपे फड़के आर्ट स्टूडियो दिखा हुआ है।

मुझे कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही--

और कुछ साइकिल भी दिख रही है।